ये शायद कुछ कर रहा है ब्लैक कलर का शर्ट पहना हुआ और सेल्फी --

और इसपे जो बोर्ड जो अ इसका वो कॉन्टर बोर्ड जो है ब्लू कलर का है जो दिख रहा ह --

यहाँ पर बुजुर्गों का चलने वाला एक साइकिल रखा हुआ है और सामने में मिरर दिख रहा है और वाइट कलर का टॉल्स बिछाया हुआ है इसपे --

बाहर में तुलसी का पेड़ गड़ा हुआ कुछ पत्थर वगैर रखे हुवे हैं उरमें मंदिर के--

जिसके काउंटर पे एक आदमी बैठा हुआ है शर्ट पहने हुआ और इस साइड उसके बगल में एक आदमी है बगल में।

और ये कोई मंदिर वेगेरा लग रहा है यहां पे बहोत सारा आदमी खड़ा है।

इस साइड में घास उस भी बहुत सारे हैं पौधे उधर एक मडैया बना हुआ है --

और यह एक घर है नीला कलर का घर है जिसमें ब्लू कलर का शटर वाला गेट लगा हुआ है जिसमें से एक गेट जो खुला हुआ है।

यह संजीवनी हॉस्पिटल है जिसकी बोड ब्लू कलर की सजी हुई है बाहर में दो गाड़ी लगे हुए हैं।

और ये कोई टेंपल वगैरह टाइप का लग रहा है यहाँ पूजा उजा हो रहा है शायद --

और यहां पर वाइट कलर की बस लगी हुए है जो जिसका दोनों दो लाइट आगे की तरफ--

कलर के जो कि ऊपर में टांगे हुए और इधर एक टेबल भी लगा हुआ है वाइट कलर का बड़ा सा --

नीचे बहुत सारी मिठाइयाँ लड्डू वगैरह करके डाली गई है।